इस चित्र में पुराने राजा महाराजाओं के समय का किला दर्शाया गया है।

चारों तरफ हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

कुछ सजावट के लिए हरे रंग की लाइटें भी लगाई गई है।

एक शेड है उसके साथ दो स्टॉल --

इस चित्र में कुछ छात्र स्कूल की व्हाइट यूनिफॉर्म में खड़े नजर आ रहे हैं।

एक बड़ी सी इमारत दिख रही है इमारत के बिल्कुल साथ एक हरे पेड़ और लाल रंग की इमारत नज़र आ रही है।

बड़ी सी बिल्डिंगस दिखाई दे रही है और बिल्डिंग के साथ ही बहोत सारी गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है।

व्यक्ति ने सफेद रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने हुए हैं।